आस पास कुछ और अन्य दुकानें भी मौजूद है।

सीलिंग पे छोटे छोटे एल_ई_डी लाइटे लगी हुई हैं और फर्श टाइल्स का है।

काउंटर पे फोन पे का इस्कैनर और बगल में एक पानी का बोतल भी दिखाई दे रहा है तथा बाहर की ओर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

बीच में एक बड़ा सा गड्ढा भी मौजूद दिखाई दे रहा है।

यह एक पेंट की दुकान के अंदर का दृश्य है।

पीछे की ओर दीवार की एक बड़ी सी बाउंड्री बनाई--

रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग बैठे हुए तथा कुछ खड़े हुए मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में सामने कुछ स्कूटी और मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे हैं।

प्लेटफॉर्म काफी साफ-सुथरा है और बेचें भी पूरी खाली हैं मौसम भी काफी साफ-सुथरा है।

गेट के पास कुछ लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

कुछ रिक्शा और मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही है।

साथ ही में सफेद रंग की शर्ट पहने दो नर्स भी दिखाई दे रही है।

तथा बगल में हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए भी सामान दिखाई दे रहा हैं।

यह एक कच्छे और बनियान दुकान का अंदर का दृश्य है।